और आसपास लोग भी जा रहे है। एक आंटी पैदल जा रही है। एक आदमी साइकल पर जा रहा है और एक आदमी यह फोटो ले रहा है।

इसके पास एक रेलिंग का कुछ बालकनी टाइप बनाया हुआ है। इसका एक डोर भी है। और इसका मेन डोर ब्लैक कलर से पेंट है।